इस दृश्य में एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के बगल में एक डाला है जिसके ऊपर एक व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ है।

ऊपर में बहोत सारे तार हैं यहां पे एक दरवाजा है।

रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे टेबल हैं टेबल के बगल बगल कुछ चेयर है जो काले रंग के है।

यहां पे बहुत सारे जूते हैं कुछ जूते लाल रंग के हैं कुछ काले कुछ उजले रंग के हैं।

यहां पेड़ है पेड़ के ऊपर कुछ पत्तियां हैं।

एक लोहे का पोल है और पीछे एक तार जा रहा है।

ऊपर में छोटा सा होल है जिसमें कुछ तार जा रहे हैं।

ऊपर में आसमान है नीचे धूप की रोशनी आ रही है।

इस दृश्य में एक दुकान है दुकान के अंदर बहोत सारे रेक हैं रेक के ऊपर कुछ बाल्टी रखे हुए है।

एक छोटा सा मंदिर है जिसके ऊपर एक थाल है।

ऊपर में एक लाइट भी जल रहा है कुछ तार है।

उपर में एक स्पीकर बाक्स है जो काले रंग है जिसके अन्दर तार लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक पिंजड़ा है जिसके नीचे टेबल है।

ऊपर में पाइप है यहां ब्लू रंग का पिंजड़ा है।

यहां ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर तीन चार अथि येलो रंग का ब्लू रंग का कुछ रखा हुआ है।

यहां बहुत सारे कॉपी किताब का कवर रखा हुआ है।

एक व्यक्ति है जो मास्क पहना हुआ है और हेलमेट लगाया हुआ है काले रंग का।

यहां बहुत सारे पेड़ भी है पेड़ के ऊपर कुछ पत्तियां दिख रही हैं।

पीछे में कुछ छोटे छोटे घर दिख रहे हैं और बहुत धुंधला है।

इस दृश्य में एक रोड है रोड काले रंग का है।

यहाँ लोहे के डंडे अटैच किए हुए हैं जिसमें रस्सी बना हुआ है

जिसपे कुछ ट्रैक्टर कुछ स्कॉर्पियो ऑटो का चित्र बना हुआ है।

दुकान के अंदर एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है।

यहाँ एक बोट है बोट पे एक चैन लगा हुआ है।

यहां बहुत सारे व्यक्ति भी है एक व्यक्ति के कंधे पर गमछा है।